रस्ते पर थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक कमरा दिखाया गया है।

मुझे इस तस्वीर पर एक ग्राउंड दिखाया गया है।

यहां पर छोटे छोटे रैक बनाकर है।

इस तस्वीर पर मुझे एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है।

यहां पर छोटे छोटे घर भी बनाए गए है।

और यहां पर इंसान भी दिख रहे हैं।

और खुला आसमान भी दिख रहा है।

और यहां पर बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स भी है।

इसको बैंबू से बनाया गया है।

इसे बहोत सारे फूलों से डेकोरेट किया गया है।

और बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक बड़ा सा बुद्धिष्ट टेंपल दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे एक शोरूम दिख रहा है।

दीवार पर अल्फाबेट लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक झरना दिखाया गया है।

यहां पर बहोत सारे जिम इक्विपमेंट्स है।

मुझे यहां एक इंसान भी दिख रहा है।